ये कोई सिनेमा हॉल दिख रहा है सामने एक बड़ा सा पर्दा लग रहा है और परदे पर कुछ चल रहा है।

ये इमारत क्या है इसका नाम क्या है और ये कहां पर स्थित है इस चीज के बारे मे मुझे कुछ भी नहीं पता।

--और रेल भी अपनी पटरियों पे डोड़ती हुई नजर आ रही है ये कोनसी जगह हैं।

ये कोई चर्च है और ये सफ़ेद रंग की इमारत बनी हुई है।

स्कूल का गेट नीले रंग का है अभी छुटियो का दिन चल रहा है इसलिए यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं दिखाई दे रहा --